इस दृश्य में हम एक रास्ता देख पा रहें हैं जो कि छोटे-छोटे पत्थरों से बनाया गया है वही हमें यहां पर एक घर की सिंड़ी भी देखने को मिल रही है साथ ही हम यहां पर--

दृश्य एक पार्क -का दृश्य है जिसका नाम भी हमें यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है साथ ही हम यहां पर अन्य पोस्टर लगे भी देख पा रहे हैं।

हम यहाँ पर जमीन पर ट्रिपल भी पूछा हुआ देख पा रहे है देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।